इस मूर्ति के पास कुछ लोग भी बेठे हुए हैं । इस मूर्ति के पास बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं ।

ये एक पहाड़ है इस पहाड़ पे बहोत सारे पेड़ हैं।

बहोत बड़ा तालाब है इस तालाब में बहोत सारा पानी भरा हुआ --

जो की खाना खा रहे हैं | इस होल में टेबल कुर्सी भी रखी हुई है। इस होल में लाईटे भी लगी हुई --

पेट्रोल पम्प के पास कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

खेत में बहुत सारे गड्ढे भी बने हुए हैं।

लाईटे लगी हुई हैं इस सड़क के पास और भी दुकाने हैं।

यहाँ पर धुआ भी लगी हुई है यहाँ पर एक ट्रक भी खड़ा हुआ है।